सामने एक बड़ा सा हाल दिखाई दे रहा है जहाँ पर कई सारे गुब्बारे लगे हुए है और कई सारी चेयर भी लगी हुई है और बोहत सारे लोग भी आस पास बेठे है और कुछ लोग खड़े है।

सामने एक बड़ी सी मेडिकल स्टोर दिखाई दे रही है जहाँ पर कई सारी मेडिसिंस रखे हुए हैं और दो आदमी भी खड़े हुए हैं जिनमें से एक आदमी मास्क लगाया हुआ खड़ा है।

सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसे व्हाइट कलर से पैंट किया गया है।

ऊपर की ओर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

सामने एक मकान बन रहा है जिसमें अ प्लास्टर का काम चल रहा है और कई सारे रॉड भी लगे हुए हैं और पास ही एक री-रेतों का ढेर लगा है जहां पर एक सफेद कलर की कार खड़ी है।

आस-पास कई सारे मकान भी दिखाई दे रहे हैं और एक मकान की छत के ऊपर छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।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

सामने एक बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है जहां पर छोटे-छोटे घांस उगे हुए है और कई सारे पत्थर भी पड़े हुए है और पास ही गड्ढे में एक पानी भरा हुआ है और पेड़-पौधे भी लगे हुए है।